और यहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं।

घोड़े की और कुछ लोग हैं जो यहां पर खड़े हुए हैं और बच्चा भी है जो राइनो को पकड़ रहा है।

आप नीचे देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं पेटीस भी रखी हुई है।

जैसे कि आप देख सकते हैं चार लोग बैठे हुए हैं वो वो मछली बेच रहे हैं।

सामने जो लोग हैं वो मछली खरीदने के लिए आ रखें है।

अ जैसा कि आप देख सकते है यहां पे तीन गायियां है जो कि चर रही है।

और ये अह योगा का ही टाइम है क्यों--

और यहां आप देश सकते है कि तनिष्क का शोरूम है यहां पे उसकी प्रदर्शनी की गई है।

इसमें लिखा है वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के आं टूरिज्म कैपिटल में आपका स्वागत है।

और जैसे की आप देख सकते हैं बगल में दो पूल के टेबल भी हैं।

उस घोड़े की मूर्ति के बीच में भगवान बैठे हुए हैं।

जंजीर के पीछे आपको दिखेगा कि एक बाघ बैठा हुआ है।

इसमें अं कुछ चीजे लगी हुई हैं जो की मैंगो का मसाला मीट मसाला फिश मसाला और शान और मैगी के पाउच विथ बूस्ट --

यह फोटो रात की फोटो है।

ये बहुत ही शांत निर्मल सी नदी है बहते हुए जा रही है।

ये रोल कटा हुआ है और इसमें मेयोनेज़ लगी हुई है।